और लेफ्ट की ऊपर साइड मूर्ति की फोटो रखी गई है।

तल में आदमी बैठा हुआ है जो काले कलर का कपड़ा पहना हुआ है और पानी बहुत दूर से बहकर आ रही है।

और कुर्सी के ऊपर प्लास्टिक पूरी लगाई गई है।

जिसके ऊपर एक वाइट कलर के गद्दे हैं और गद्दे के ऊपर दो तकिये रखे गए हैं।

फोटो के सामने एक सोफा रखा गया है जिसके सामने एक काले कलर का टेबल बनाया गया है।

और इसके ऊपर की कपड़े भी सीमेंट की बनाई गई है जिसके ऊपर गोल्डन कलर का डिजाइन किया गया है।

और राइट साइड आदमी लोग बैठे हुए हैं और उसके ऊपर एक बोर्ड है।

यह एक बहोत बड़ा बस है जिसका कलर व्हाइट और हरा है और इसमें दो टायर लगी हुई है और आगे के साइड एक गेट हैं।

और इस बस में सारी खिड़कियां में पर्दे लगाए गए हैं और कुछ कुछ लाइट लगाए गए हैं शीशे में।

और उसके सामने बहुत सारे गाड़ी लगाई गई है जिसमें एक गाड़ी को ढका गया है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है।

और एक बड़ा सा टेबल है जिसके ऊपर एक थाली है और थाली पूजा करने वाली है।

और इसके लेफ्ट साइड एक पीले कलर का कपड़ा टांगा गया है मूर्ति के ऊपर और राइट साइड एक आदमी का पुतला खड़ा है।

इसने एक शेट पहना है जिसका कलर कत्था है।

और राइट साइड बहुत सारे अलमारी में कपड़े हैं जिसके ऊपर लिखा गया है फिक्स्ड फिक्स्ड प्राइज

जो लाल कलर के कपड़े पहने हुए हैं और टोपी पहने है और एक आदमी जो ऑरेंज कलर शर्ट पहन कर खड़ा है।

और उसके सामने एक बड़ा सा टैंकर है पेट्रोल पम्प वा--

और घर के सामने बहुत सारे पेड़ लगाए गए--

और उसके सामने एक कुर्सी है जिसके पीछे जेनिफर लिखा गया है।

एक केले बहोत सारे केले रखे गये है और उसके बगल में पाइनएप्पल रखे हुए है।